दी सिटी कैफे ऐसा लिखा हुआ है एक दुकान के ऊपर बोर्ड बना हुआ है।

जिसके ऊपर पीले कलर के गुब्बारे रखे गए हैं बाहर में दो लड़कियां है।

जो विक्टरी का चिन्न दिखा रही है हाथों में मोबाइल लिए हुए है और एक मोटरसाइकिल लड़का भी है।

काफी सारे मिक्सचर्स रखे हुए हैं और यह प्लेट जो है बिल्कुल सफेद रंग की दिखाई दे रही--

में दो चम्मच भी रखे हुए हैं बड़े-बड़े बाकी सब प्लेट खाली दिखाई दे रहा है।

और होटल में अंदर में एक मिठाई का काउंटर भी बना हुआ है इस काउंटर में कुछ मिठाईयां रखी हुई हैं बाहर एक टेबल रखा गया है टेबल पर--

जो गांव का यह मुख्य संड़क दिखाई दे रहा है संड़क पर काफी सारे ब्यक्ति इधर से उधर--

और उस टैंक में पेट्रोल भरकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पास पहुंचाया जाता है।

राजकीय कृत गुट्टीलाल कन्या उच्च माध्यमिक प्लस टू विद्यालय--

समान का यह दुखान दिखाई दे रहा है जहां पर मशीनरी से संबंधित समान रखे हुए हैं।

और प्लेट का जो रंग है बिल्कुल सफेद कलर का है चीनी मिट्टी का प्लेट दिखाई दे रहा है इसमें आलू का पराठा है।

और उसी तरह का यहाँ पर मशीन लगाया गया है जो बिल्कुल सफेद कलर की है और एक डॉक्टर साहब भी हैं कुर्सी के पास में खड़े हैं।

पहाड़ की ऊंचाइयों पर बैठकर एक व्यक्ति पूरी दुनिया को देखता हुआ नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है मानो--

जहां पर ढेर सारी महिलाएं बहोत छोटी छोटी बच्चीया इस कार्यक्रम का हिस्सा ली हुई है।

कुछ देती हुई दिखाई दे रही है मानो ऐसा लग रहा है किसी कार्यक्रम की सपाप्ति होने पर--

बिल्कुल व्हाईट और ब्लू कलर का है कुछ गुब्बारे भी इस पंडाल में लगे हुए हैं।

रखे हुए हैं ऐसा दिखने से पता चल रहा है कि कूलर का यह शोरूम दिखाई दे रहा है।

मानो किसी इंडस्ट्रीज का गेट पर आया दरवाजा दिखाई दे रहा है और अंदर में--

ये दो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं जिस पर वह बैठता है दुकानदार है जो खड़ा है।

और ये ट्रक जो है उस पर इंडियन गैस लिखा हुआ भी है ट्रक के अंदर कोई भी गैस का सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा है।

पोस्टर पे एक सामने से लिखा हुआ है एम_बाई_एस।

रूबी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टेशन रोड --